छोटे छोटे घर भी हैं ग्राउंड बड़ा है।

एक नीले रंग का नीचे दिख रहा है।

और एक मंदिर की तरह बहुत ऊंची बनी है दीवार।

हरे घास दिख रही है।

और किनारे पर्दे भी लगे हैं और तीन लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग बैठे और कुछ खड़े हैं।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

मुझे इस तस्वीर में एक गाड़ी दिख रही है।